ये एक पार्क है इस पार्क मे बच्चे खेल रहे है इस पार्क मे झूले भी लगे हुए है।

बिल्डिंग के पीछे काफी पेड़ है पेड़ के पीछे स सूरज निकल रहा है आसमान है काफी बड़ा आसमान दिख रहा है।

इसके सामने एक कैमरा लगा हुआ है गुलाबी रंग की दीवार है वो ऊपर पंखा है एक व्यक्ति है जो तस्वीर ले रहा है ये व्यक्ति कत्थे कलर की जैकेट और वाइट शर्ट पहना हुआ हैं ।

इसका कलर पूरा लाल है पीछे पेड़ लगे हुए है उस पेड़ मे भी लाल रंग है लाल रंग के फूल है सामने कुछ व्यक्ति है जिसमें तीन जो है वो पीले रंग के कपड़े पहने है बाकी नीले और लाल--

इसमें बोहोत सारे बैलून लटके हुए है एक डे_डेस्क है जिसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए है दो नीले रंग के कपड़े पहने हुए है एक व्यक्ति सफेद रंग कपड़े पहना हुआ है साइड में एक पीला रंग का टेबल है।

ये स्टेज की तस्वीर है इसमें काफी नृत्य करने वाली कन्याएं है ये स्टेज की सीढ़ीयाँ --

ये तस्वीर गुफा मंदिर की है एक गुफा टाइप मंदिर है जिसके ऊपर सर्किट लटकी हुई है इसमें नीले रंग की सर्किट है।

और पीछे पेड़ लगा हुआ है सामने बारिश का पानी है और ऊपर आसमान है काफी बड़ा--

यह एक पार्क की तस्वीर है पार्क में एक सेड बना हुआ है और सेड के निचे हरे रंग के डंडे लगे हुए हैं |

दो बिल्डिंगे बनी हुई हैं दो पेड़ लगे हुए हैं।

नीचे हरियाली है घासे लगी है दो इसमें गिट्टी के ढेर रखे हुए है सामने कुछ लोहे की चादरे पड़ी हुई है आसमान काफी बड़ा नजर आ रहा है।